देख सकते हैं जो की हरा-भरा सगरो पेड़-पौधा पहाड़-पर्वत की तरह लग रहा है।

और हरा-भरा सगरो लग रहा है। पहाड़ी इलाका की तरह ऊंच ऊंच-नीच है।

और आस-पास बहुत सारे काँच है आस-पास बहुत एक दू तीनगो टावर भी दिख रहा है ।